इस पिक्चर में हमे एक पार्क दिखाई दे रहा है और पार्क मे जीम मशीनो पर एक्सरसाइज करते हुए लोग दिखाई दे रहे है।